बंगले की छत पर एक और लड़का खड़ा हुआ है पीछे सीढ़ियां लगी हुई है एक ऑटो रिक्शा नजर आ रहा है एक बाइक पे जाता हुआ इंसान भी नजर --

यह एक पिंक कलर की बिल्डिंग का फ़ोटो है जिसके नीचे मोटर साइकिल खड़ी हुई है एक पेड़ नजर आ रहा है।

और एक आदमी जैसा खड़ी हुई मूर्ति रखी हुई है सामने कांच के अंदर ये सारी चीजें रखीं हैं।

इस फोटो में कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति नजर आ रही है बहुत ही सुंदर मूर्ति है कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी रखी हुई है माथे पर मुकुट --

ये पीक एक स्टेज डेकोरेशन की है इस स्टेज का डेकोरेशन बहुत ही सुन्दर इसमें दो मोर लगाए गए हैं नीले कलर के नीले कलर की लाइटिंग से इसको डेकोरेट किया गया है।

ये एक सैमसंग गैलक्सी मोबाइल का शॉप नजर आ रहा है जिसमें बहोत सारे बल्ब लगे हुए हैं इसमें इस्त्री भी रखी हुई है प्रेस करने जैसी चीजें।

इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने नीले कलर की शर्ट पे बैठा हुआ है जिसने नीले कलर की शर्ट पहन रखी है।